पृष्ठभूमि में हिमालय पर्वत जैसा चित्रण किया गया है।

नीचे द चा चेन्नई सिल्क नामक एक प्रसिद्ध एक कपड़ों की दुकान है।

गलियारे के दोनों ओर स्तंभ है जो संरचना को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

कुछ लोग वहां बैठे हुए हैं जो पूजा या सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो रस हो सकते हैं।

इसमें एस्केलेटर सीढ़ियां नजर आ रही हैं।

मॉल के फर्श पर बच्चों की इलेक्ट्रिक टॉय कार रखी हुई है जिसे किराए पर चलाने के लिए उपयोग किया जाता है।

एस_बी_आई कार्ड का काउंटर भी दिखाई दे रहा है जिससे यह एक व्यावसायिक स्थान स्थान लग रहा है।

खिलौने की पैकिंग आकर्षक और रंगीन है जो बच्चों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन की गई है।

इस तस्वीर में एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ लोग पानी में खेल रहे हैं।

पूल के किनारे पर कुछ सामान जैसे बैग पानी की बोतले और कुछ अन्य उपकरण रखे हुए हैं।

जो यह संकेत देते हैं कि शायद यहां कुछ मरम्मत का काम या सजावट की जा रही है।

बड़ी खिड़कियां और नुकीले टावर इस शैली की विशेषताएं है।

यह तस्वीर एक सुंदर फूल की है जो संभवतः डहलिया प्रजाति का फुल है।

रेस्टोरेंट का बाहरी हिस्सा बैगानी और पीले रंग में रंगा हुआ है जिसे यह आकर्षित दिख रहा है।

आस पास कुछ निर्माण सामग्रीय जैसे मार्बल और अन्य स्टूल दिख रहे हैं अंदर एक ऑटो भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में यह एक सर्विस स्टेशन है जहां वाहनों की मरम्मत या निरीक्षण किया जाता है।

दीवारों पर विभिन्न सूचनात्मक पोस्टर और प्रमाण पत्र लगे हुए हैं।

किसी ग्रामीण या कस्बाई इलाके में आयोजित किया गया स्वास्थ्य शिविर प्रतीत होता है।

अंदर का वातावरण साफ सुथरा और व्यवस्थित है जिससे यह एक प्रोफेशनल जगह प्रतीत होती है।

लाल रंग की हाइड्रोलिक लिफ्ट नजर आ रही है जो आम तौर पर गाड़ियों की मरम्मत या सर्विसिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है।

दुकान का नाम प्रीमियम प्वाइंट इंश्योरेंस सेंटर है जो बीमा संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृश्य को दर्शाया गया है।

सेल्फ पर खाद्य पदार्थ मसाले तेल और अन्य रोज मर्रा की जरूरतों के सामान व्यवस्थित रूप से रखे हुए है।

दुकान की अलमारी में रंग बिरंगे कपड़े और बॉक्स में पैक किए गए वस्त्र रखे हुए--

बैनर पर लारा ब्रॉसिल जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों का उल्लेख किया गया है।

आस पास पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

छात्र अनुशासन पूर्वक बैठे हुए हैं और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं।